जिनमें से कुछ नारियल का रंग हरा है और कुछ का रंग हल्का पीला हो गया है।

उस जगह पर कई सारे लाइट के खंभे भी हैं।

जिसमें अलग अलग तरीके के कई प्रकार के दवाइयां सिरप और सामान मिलता है।

बाएं तरफ बच्चों के डायपर भी टंगे हुए देख सकते हैं।

जिसमें कई सारे कुर्सी और मेज लगे हुए है।

और एक बाइक के पास एक आदमी खड़ा हुआ है।

मेज लगे हुएं हैं मेज पर सामान रखा हुआ हैं।

और एक स्कूटर का रंग सफेद है।

इस पिक्चर में हम सफ़ेद कलर की बिल्डिंग देख सकते है।

यह तस्वीर एक गुफा की है।

यह तस्वीर में हम एक मंदिर देख सकते हैं।

और मुर्गी बत्तख भी देखे जा सकते हैं।

इस तस्वीर में सामने एक नीले रंग की दीवार बनी हुई है।

और झंडे लगे हुए और वृक्ष भी लगे हुए हैं।

डाइनिंग हॉल के ऊपर एक घर जैसा बना हुआ है जिसके ऊपर से कई सारी बिजली की तारें गई हुई हैं।

इसमें दो पुरुष भी दिख रहे हैं एक पुरुष ने नीला और एक पुरुष ने गुलाबी कलर का शर्ट पहना हुआ है।

और यह एक ब्रिज बना हुआ है।

जिसमें लॉरियल कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट देखे जा सकते हैं।

बिल्डिंग का रंग हल्का भुरा है।

इसमें सामने की तरफ कई सारे बड़े बड़े पत्थर हैं।

जिसका रंग सफेद और गहरा नीला है।

बाहर तीन लाल रंग की कुर्सियां दिख रही हैं।

यह तस्वीर के अंदर जिओ का प्रचार किया गया है।

ठीक उसके बगल में ओयो का चिन्ह भी देखा जा सकता है।

और उनके ऊपर पन्नी भी लगी हुई है।